और एक सर उन्हें समझा रहे--

ये देख पा रहे हैं कि यहां पर एक बहोत बड़ा सा--

इस पिक्चर में हम ये देख पा रहे हैं।

कि देख पा रहे हैं कि यहां एक लड़का मास्क लगा कर --